ब्लैक बोर्ड में कई लोगों की फोटो लगी है छोटी-छोटी--

और पेड़ के पीछे घर भी बना हुआ है।

बिछा हुआ है सफेद रंग का उसके पास एक चेयर भी रखी हुई है पर्दे भी लगे हुए हैं ।

चक्र बना हुआ है उसके बीच में ब्लू कलर के एक बैनर लगा हुआ है जिसमें लिखा है टाटा पावर ।

एक आदमी सफेद रंग की टी शर्ट पहने मोबाइल पर बात कर रहा है।

स्लिप में कुछ बर्तन रखे हुए हैं कुछ हैंगर में टंगे हुए हैं।

लोहे की कढ़ाई स्टील के भी हैं और कुछ कंटेनर --

उन्होंने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है कुछ ने रेड और यलो कलर की भी पहनी हुई है बेग भी टांगा हुआ है।

और कुछ घर भी बने हुए हैं एक तंबू भी है यलो और ब्लू कलर का उसके पास एक कुर्सी रखी है सफेद रंग की--

और कुछ लोग बैठे देख रहे हैं कुछ लेडीज भी हैं आदमी भी हैं बच्चे भी हैं।

ये एक दीवार है दीवार पे सफेद रंग का पेंट हो रखा है लोहे की गिरेबी है।

एक हवाई जहाज है हवाई जहाज उड़ान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।

और उसके बाहर दो आदमी खड़े हुए हैं एक ने सफेद रंग की शर्ट्स पहनी हुई है।

और एक साइड में शेरा वाली की फोटो है और दूसरी तरफ दूसरे देवता की फोटो है।

जिसमें ये सामने बैनर लगा हुआ है उस पर लिखा है आदिवासी मुलीचे शासकीय बस्ति ग्रह ।

और एक आदमी सफेद रंग की शर्ट्स पहने बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है।

कुछ फोटो खींचवा रहे हैं आपस में बात कर रहे है।

और कुछ लोग भी खड़े है।

इस चित्र में जंगल का चित्र है।

एक उसके बराबर में एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशन की दुकान है।

मंदिर के मुख्य द्वार पर तीन शिखर है।

ब्लू कलर की शर्ट पैंट पहने माइक से बोल रहा है और --

और के शीशियां भी रखी हुई हैं कुछ गत्तों के डिब्बे में सामान भी रखा हुआ है।